वॉटर बोटल है और सामान फैला पड़ा है।

सामने टेंट लगा है और यहां पे तीन बच्चे खेल रहे--

फर्श ब्राउन कलर की है।

अगल बगल खूब सारे लोग और चेयर है।

को ऑप्टिक्स है इस पे बटरफ्लाई कलरफुल बनी हुई है।

एक लड़का है जो बाल कटवाने के लिए बैठा है ब्लैक चेयर पे।

पिज़्ज़ा हॉट पर दो लोग खड़े हुए हैं और अंदर दो लोग हैं।

उसके बगल में भाजी की दुकान है जिसके अंदर कोई नहीं है।

जस्ट उसके सामने एक काउंटर है जिस पे दो लोग बैठे हुए हैं और लाइट भी है।

सीढ़ियों के से जुड़ा हुआ एक गमला रखा है जिसमें हरे कलर का छोटा सा पौधा हैं।

सबसे ऊपर तीन बॉटल रखे एक ब्लू एक वाइट एक पिंक ।

वो बाइक पे एक आदमी है आदमी के साथ एक बुर्के में औरत है।

और यहां पर चार पर्सन हैं।

जिसमें से एक पुलिस --

उसके बगल में एक स्ट्रीट लाइट है।

तीन काले कलर के कउए है।

एक आदमी है ब्लू कलर की टी शर्ट में और दतुईन --

भूल भुलैया है जो बड़ी वाली और डस्टबिन है।